और नीचे बाइक भी खड़ी हैं। बगल में भी घर दिख रहा है। बिजली के केबल भी दिखाई दे रहे हैं।

भी कुछ दिख रहा है। थोड़ी सी छाँव है। अ किसी चीज की परछाईं दिख रही है।

और यहाँ पे आसमान बहुत सुन्दर दिख रहा है यहाँ पे कोई है नहीं एकदम खली जगह है।

अ यहां पे देखिये ये जो इमेज दिख रहा है। यहां पर थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट है और कुछ में कलर है। यहां पर दो बाइक दिखाई दे रही है। नीचे पत्थर के टुकडे दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक छोटा सा ब्लू कलर का ब बोर्ड लगा हुआ है। आसमान पर्पल एण्ड ब्लू व्हाइट मे दिखाई दे रहा है। पेड़ दिख रहे --

यहाँ पर देखिये अ यहाँ पर थोड़ा सा पानी दिख रहा है और यहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है जो पानी के बाहर है।